और यहां पे कई प्रकार के कपड़े भी मिलते हैं इस दुकान का पता है शॉप नंबर चौंतीस ग्राउंड फ्लोर विजय सॉफ्टी मॉल ।

यह बिल्डिंग लाइन लगी हुई है यह पौंड का पानी बहुत ही साफ है जिसमें पेड़ों की परछाई हम साफ देख सकते हैं आसमान --

पार्क की हुई है बहुत ही खूबसूरत होटल है रोड भी बहुत सुंदर है फुटपाथ बनी हुई है पार्क में।

ये एक तालाब का फोटो है जिसमें जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर लोग खड़े हैं।

विभिन्न तरह के फूल लदे हुए है और मंच पर चढ़ने के लिए दूल्हा दुल्हन के लिए सीढ़ियां लगी हुई है।

इसमें बहुत ही अच्छी लाइट लगी हुई और छत पर बहोत ही अच्छी कला कृति लगी है हुई है यहां पे पंखे लगे हुए --

इसमें कालका माता भी इसमें तीन देवियों की मूर्ति है और एक पास में सर--

देवर एक दिन मूर्ति बनी हुई है जो बहोत ही सुंदर है और पीछे सूर्य मंदिर बना हुआ है मौसम बहोत ही सुहावना है बारिश हो --

ये एक होटल का फोटो है जो बहुत ही सुंदर होटल है और इसके छत में लाइटें लगी हुई है पंखे लगे हुए हैं।

स्कैनर भी रखा हुआ हैं जिससे ये यहाँ पर खाना खाने वाले स्कैन करते हैं टेबलें लगी हुई हैं जिस पर लोग खाना खा रहे हैं

ये एक रेलवे स्टेशन का फोटो है जिसमें एक दुकान दिखाई दे रही है और रेलवे स्टेशन फीस --

ऊपर टीन सेट भी दिखाई दे रहा है उधर से एक महिला आई हुई दिखाई दे रही है रेल पटरीयां दिखाई दे रही है और पास में यहां पर रेलिंग भी लगी हुई है।

ये किसी बाजार का एक फोटो है जिसमें बहुत सारी मेडिकल की दुकानें दिखाई दे रही है जिसमें शिव मेडिकेज है मानक मेडिकोज --

पेड़ बहोत ही बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और पूरे मैदान में धूप लगी हुई हैं और --